काफी सोलर प्लेट लगी हुई है आगे की तरफ भी चारों दुर तक सोलर प्लेट ही दिखाई दे रही हैं।

लोग हैं जो खड़े हुए हैं काफी लेडिजे हैं शायद ये किसी का वेट --

इस फोटो में आप देख सकते हो इंजीनियर हैं दो जो खड़े--

जिसने की एक तारा है पकड़ा हुआ है और ये इसे बजा रही है और स्टेज भी काफी डेकोरेटेड किया हुआ है आप--

बाइक अभी इसके अंदर बची हुई हैं जो व्हाइट कलर की बाइक हैं और ब्लैक कलर की है।

और इसमें ऊपर लिखा हुआ है कदम स्वच्छता की ओर एक कदम स्वच्छता की ओर--

आप देख सकते एक बाइक वगैरा बाहर खड़ी हुई है शायद ये कोई कृषि विज्ञान केंद्र का फोटो मेरे ख्याल से इसमें काफी पेड़ पौधे भी उगाए हुए है।

तो इस फोटो में हम देख सकते हैं कोई कंपनी वगैरा नहीं--

इसमें शीशे वगैरह भी काफी लगे हुए हैं और इसके बाहर काफी ऑटो वगैरह भी--

इस फोटो मे हम देख सकते हैं ये कोई स्कूल वगैरा का प्रोग्राम दिखाई दे रहा है यह शायद कोई--

एल_ई_डी लगी हुई हैं यहां पर लाइटिंग वगैरह काफी अच्छी दिखाई दे रही हैं।

रिकॉर्डिंग का सिस्टम है जैसे कि माइक वगैरह भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

थैली का कवर चढ़ा रखा है और ये गत्ते का एक रोल भी रखा हुआ है और एक स्कूटी खड़ी हुई है काफी अंदर सा भी रखे हुए है डब --

तो इस फोटो में हम देख सकते हैं काफी पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ये पहाड़ बिल्कुल पथरीले पहाड़ हैं इसमें ओन्ली पत्थर ही पत्थर--

इसकी बाउंड्री भी लकड़ी वगैरा से की हुई हैं।

इस फोटो में किसी का घर दिखाई दे रहा है इसमें एक गाड़ी खड़ी है और घर में काफी बड़ा जंगला लगा हुआ है आप देख सकते हैं पेड़ लगा हुआ है और--

ऊपर लोहे की टीन्स वगैरा डाली हुई हैं।

दिखाई दे रहा है आपको जिसमें गर्मी यूज होने वाड़े तकरीबन सारे सामान मिल जाती हैं।

आप देख सकते हैं गेट लगा हुआ है गेट में ब्लू कलर की चादर लगा रखी हैं और काफी बाइक्स --

जो मुझे समझ में नहीं आ रहा और इसमें प्लस के निशान है उस हिसाब से यह मेडिकल होना चाहिए पर लोहे का गेट है इस हिसाब से--

और जिम की यहां पर बहुत बड़ी बड़ी मशीने रखी हुई है गुलाबी कलर का मैट बिछा रख्या है।